यहां बहोत सारे शैंपू बिस्किट साबुन नमकीन--

एंप्लॉय है इसको हम व्हाइट टी शर्ट और हाफ पैंट में देख रहे हैं।

देख सकते हैं जिसका कलर हल्का--

यहां बच्चों ने तीन लाइनें लगाई हुई हैं।

इस इमेज में हम एक आदमी को मछलियां काटते व बेचते हुए देख रहे हैं।

उसके लेफ्ट ही हैंड साइड पे हमें कुछ बच्चे और सिक्योरिटी गार्ड भी नजर आ रहे हैं।

यहां एक महिला एक पुरुष के बैगिंग की चेकिंग कर रही है।

और इसने अपना मुंह और चारों पैर को अपने सेल से बाहर निकाला हुआ है।

जी के एक हाथ में अ कृष्ण जी के एक हाथ में एक ही बांसुरी पकड़ी हुई है।

यहां पानी के बगल में हम एक लड़की पे खड़े हुए कुछ--

एक पुरुष जो कि कुर्ता और पजामा पहना है वो फोन से किसी से बात कर रहा है।

इस इमेज में हमें चंपारण मिट हाउस का बोड देख सकते है जोकि--

और सब ने अपने अपने एक एक हाथ में था प्लेट पकड़ी हुई है।

साइकिल पे आ रहा है एक आदमी बाइक पे आ रहा है।